अ झरने भी नजर आ रहे हैं। बहोत हरा बड़ा जंगल है। दिन का समय है। इसलिए उजाला नजर आ रहा है। जैसे की दिन का समय होने की वजह से झरने भी नजर आ रहे हैं। और हरा-भरा घने जंगल पत्थ पत्थर वाला जंगल जो है। पत्थर भी कुछ नजर आ रहे हैं। और पेड़ भी हरे-भरे नजर आ रहें हैं। यहाँ पे --

पेंटिंग की तरह नजर आ रहा है जो ग्रे कलर का भी है और तालाब में पानी भी नजर आ रहा है और जो है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में एक छोटा सा नदी नजर आ रहा है जंगल का तस्वीर है बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं घास भी नजर आ रहा है।

बहोत छोटे छोटे पत्थर भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में।

लगा हुआ है लाइट भी जल रहा है।

ती बड़ा जिम लग रहा हैऔर प--

इसमें जो तस्वीर है तस्वीर कोई --

और बाहर में बहुत सारे मोटरसाइकिल ।

ये जो तस्वीर है तस्वीर एक कोई दुकान का डिस्प्ले का तस्वीर खिंचा गया है यहां बहुत सारी मिट्टी के पॉट बने हुए हैं मिट्टी के प्लास्टिक के हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पॉट बने हुए हैं अगर डिस्प्ले में बहुत सुंदर से रखा हुआ है।

जो तस्वीर में जो जमीन के रंग होते है वह नेचुरल नहीं नजर नहीं आ रहा है लग रहा है--